ऐसा विद्यालय है की --

उसका मुंडेर बहुत अच्छा केक है ।

यहाँ पे बहुत सुन्दर केक है | खाने मैं हमको मस्त लगता है केक | हमको बहुत --

यहाँ पे पेड़ पौधा दिख रहा है कितना

ये लोग कैसे हैं इसका पलंग बनता है ।

बहुत सारा लड़का लोग हैं लड़की लोग हैं जो खेल रहे हैं कूद रहे हैं बहुत अच्छा से बहुत अच्छा से जा रहे है।

और इसपे हर एक मशीन अरे वाह इतना अच्छा सुविधा दिया गया है ।

देखते रेहनी उ गाड़ी लगा हुआ है लाइन से तीन ठो गाड़ी है।

बहुत मस्त लग रहा है बाइक भी और बाइक भी बहुत अच्छा अच्छा है बहुत भयंकर है बढ़िया बाइक है ।

ये घर पे भी एक चीज़ होता है और इतना मस्त है की --

यहाँ देखिए बाइक की शोरूम है ये बाइक शोरूम है ।

एक लाइन से लगा हुआ है शोरूम मे रखा हुआ है एक लाइन से गाडी ई सब |

मोर है मोर है ये मोर है इतना अच्छा मोर देखने मे बहुत सुन्दर लग रहा है ये मोर |

ओ माय गॉड ये देखिए फ्लाई --

फ्लाइट ही नहीं है बहुत बढ़िया फ्लाइट है इतना सुन्दर है इतना अच्छा है।

बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत भयानक लग रहा है देखने मे बहुत सुन्दर लग रहा है ।

अच्छा लगता है ये देखिए बराती ए वाला --